इस चित्र में बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है उन बिल्डिंगो पर जो कलर है व येलो एंड वाइट कलर है इसके जो गेट है वो ब्राउन कलर के है इस बिल्डिंगो के आस-पास कुछ पेड़-पौधे भी है।

इस कार्यालय में लाइट भी लगी हुई है। इस कार्यालय के बाहर जो दुभा दिख रही है वो ग्रीन कलर की दिख रही है।

इस चित्र में जो सड़क दिख रही है उस सड़क के आस पास दूबा है वह ग्रीन कलर की दिख रही है और कुछ मकान दिख रहे हैं जो वाइट ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के दिख रहे हैं।

चित्र में जो मूर्ति दिख रही है उस मूर्ति पर जो कलर पुते हुए हैंग्रीन रेड लाइट पिंक और गोल्डन और ब्लैक कलर पुते हुए हैं।

इसमें जो कांच लगे हुए है वो ब्लू कलर के है इस केंद्र के आसपास कुछ रेलिंग भी दिख रही है इस केंद्र के आसपास कुछ पेड़ भी दिख रहे।